यहां पर बहोत बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी हैं।

लेडीज स्नान कर रही है।

पर एक स्मॉल सा पुल है। उसके अंदर बहोत सारा--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

यहां पर मुझे एक एरिया दिख रहा है।

पर मुझे बहुत सुंदर सा एरिया दिख रहा है।

पर मुझे एक रूम दिख रहा है जहां पर एक लड़की खाना बना रही हैं।

बहुत ज्यादा घास लगा हुआ है और यहां का मौसम बहुत ज्यादा खराब है।

और यहां पर मुझे आदमी भी इधर उधर चलते नजर आ रहे हैं।

यहां की खिड़की पर पर्दा लगा हुआ है और खिड़की मिरर की है।

यहां पर बहुत सी खिड़कियां भी बनी हुई हैं।

और यहां पर एक बहुत लंबा पुल भी बना हुआ है।

रहा है जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बनाई हुई है और यहां पर बहुत सारे लोग--

और इसके आसपास बहुत सारे बड़े-बड़े--

और ये बहुत सारी लकड़ियों के चीजें रखी हुई है।

पर कुछ एक चीजें बहुत बड़ी-बड़ी हैं जो कि लकड़ियों से बनाई गई है इसके फ्लोर पे--

यहां पर मुझे बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है।

इस इमारत पे बहुत सारे पोस्टर्स भी लगाए गए --

जहां पर एक नाव भी है और--

जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ भी मुझे दिख रहा --

पर मुझे एक बहोत बड़ी शॉप दिख रही है।

और इस शॉप में बहुत सारी लाइटिंग्स भी लगी हुई है।

पर मुझे एक बहुत बड़ा एरिया दिख रहा है।

जहां पर बहुत सारे बड़े-बड़े--

है यहां पर खेलने की बहोत सारी चीजे रखी हुई है।

लहसुन व अन्य सामग्री भी रखी हुई है।

पर बहुत सारी लाइटिंग्स भी रखी हुई है।

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा हॉल दिख रहा है जो एक होटल है यहां पर दो ट्यूब लाइट्स लगी हुई हैं।

यहां पर बहुत से आदमी खाना--

पर एक काउंटर भी है और यहां पर बहुत सारी चेयर्स भी लगी हुई है और यहां पर बहुत सारे टेबल्स भी लगे हुए हैं।

यहां पर मुझे एक रोड साइड एरिया दिख रहा है जहां पर एक बहुत।

जिसमें बहुत सारा पानी भी है।

और बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

और यहां पर बहुत सारे टेबल्स भी लगे हुए हैं और इस यहां के फ्लोर में बहुत सारे लैंप एंड झूमर भी लगे हुए हैं।

जहां पर बहोत सारे लोग खड़े हैं और कुछ एक बच्चे नीचे बैठे हुए हैं यहां पर कुछ रंग बिरंगा सा फर्श मुझे दिख रहा--

इस बिल्डिंग में मुझे बहोत सारे पोस्टर भी नजर आ रहे हैं।

और यहां पर बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स भी बनी हुई है।

ऊंची-ऊंची चोटियां भी दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक बहुत बड़ा एरिया दिखाई दे रहा --

पर बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ मुझे नजर--

पर बहुत बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ --

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा सा हॉल नज़र आ रहा--